इस फोटो में मुझे कुछ टायर दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे एक तालाब दिखाई दे रहा है।